ऊपर नीला आसमान है।

यहाँ पर लकली की चेयर --

यह एक ग्रीन कलर है। ब्राउन बृक्ष तीनो ओर पेड़ दिखाई दे रहे हैं।